नीलाभ फिटनेस क्लब दिखाई दे रहा है यहां पे बहुत सारे ए पोस्टर लगे हुए हैं जैसे जिम के और यहां पे ऐसा लग रहा है जैसे यहां जिम है और यहां पे बहोत सारे लोग अपने काम करने आते हैं जिम का काम जैसे बॉडी वगैरह बनाना और या फिर इसके ऊपर नीट साइड लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है।